यहां पर लाल रंग के परदे लगे हुए हैं और जमीन पर हरे रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है।

यहां पर एक सफेद रंग का मेज पड़ा हुआ है और लाल रंग की कुर्सियां पड़ी दिखाई दे रही हैं।

इमारत का कुछ हिस्सा टूट गया है और कुछ हिस्सा साबुत है।

छत पर कुछ लाइटें लगी हुई हैं और दीवारों पर सामान को सजाया गया है।

दीवार पर एक टाइम देखने के लिए घड़ी टंगी हुई है।